मुझे सामने एक इमारत दिखाई दे रही है यह एक महल जैसा दिखाई दे रहा है महल में काफी ज्यादा दरवाजे लगे हुए हैं और यह जो महल है यह एक चौकोर शेप में लग रहा है महल के अंदर शायद एक आदमी है जो कि देख रहा है महल को काफी अच्छी तरीके से और यह महल के ऊपर नीला नीला आका --

मुझे सामने एक फीमेल जनरल वार्ड दिखाई दे रहा है जो की ब्लू कलर का है और वो एक दीवाल पे लगा हुआ है दीवाल का कलर व्हाइट है। पीछे --

जो सामने कबाड़े की दुकान दिखाई दे रही है जिसमें कबाड़ा रखा हुआ है काफी ज्यादा दुकान काफी ज्यादा ब्लैक ब्लैक दिखाई दे रहा है उससे तो यही लग रहा है कि कबाड़े की दुकान है उसमें जगह-जगह वाइट कलर के पोस्टर जैसा कुछ चिपकाया हुआ है पीछे किसी के कपड़े भी रखे हुए दिखाई दे रहे हैं सामने में नींबू मिर्ची की माला लगी।

और अ दिन का टाइम है जिससे कि काफी ज्यादा रोशनी--

जो सामने एक मैरिज हॉल दिखाई दे रहा है ये शायद मैरिज हॉल है या पता नहीं क्या है टेंट लगा हुआ है इसमें बाहर फूलों से कफी अच्छा डेकोरेशन किया हुआ है और इसमें एक आदमी है जोकि--